काफी लोग है जो संडे वाले दिन यहां पर अपनी--

बालों की कटिंग भी करवाते हैं शेव भी करवाते हैं.

ये एक पुल का नजारा है और--

लोहे की ग्रिल से ढका गया है और--

ये पुल एक रोड से दूसरे रोड को जोड़ता हुआ--

इसमें प्ले ग्राउंड है जहां बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं।

ए_वाय_एम_सी_ए का ऑफिस है जो शिमला पे है.

ये एक पार्क के फोटो हैं जहाँ पर बहोत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं।

वाइल्डलाइफ सैंक्चुअर के नाम से यह बना हुआ है।

ये एक होटल है रिजॉर्ट है जहां पर टूरिस्ट के लिए काफी फैसिलिटी है।

ये एक बच्चों का डॉक्टर है.

हाइट नापने के लिए मेजरमेंट रखा गया है।

टेबल के ऊपर बच्चो के पसंद की चीज रखी गई है।

बहुत ही अच्छे तरीके से इसे डेकोरेट किया गया है.

और देखने में ये रोज गार्डन की तरह लग रहा है.

ये गोल मोटर है जहां पर गाड़ियों को--

काफी अच्छी बैकग्राउंड है इस कंपनी की--

और तीसरा चाय की दुकान फ्रूट्स के साथ-साथ यहां पर काफी सारे--

मिल जाती है और साथ में चाय भी--